अ फेविकोल रखा हुआ है और कुछ बच्चा जा रहा है एक बच्चे दो बच्चे मास्क लगाए हुए हैं एक लड़का उधर काम कर रहा है वो भी कुछ लिख रहा मतलब --

यहाँ पे गेट लगा हुआ है ग्रेट काला कलर का है उस गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा उसपे लिखा है प्रवेश निर्वेच यह आम रास्ता नहीं है यहाँ पे एक चेन लगी हुई गेट के आगे और गेट खुला हुआ है।